भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई दे रही हैं ।

और बहोत ही हरयाली दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक सलून दिखाई दे रहा है।

एक स्विच_बोर्ड दिखाई दे रहा है एडजस्ट फैन दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक युवती दिखाई दे रही है जिसने के सफ़ेद और लाल कलर की साड़ी पेहनी है।

यहाँ दो पहिया वाहन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति लाल कलर की टीशर्ट और काले कलर पैंट खड़ा अ पेहन कर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है बहोत साड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

पीछे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है ग्रीन कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे दो पहिया वाहन दिखाई दे रहा है।